बहुत सारे यहां पे मेज कुर्सी भी लगी हुई है।

जो दीवार पर पाइप भी लटके हुए दिखाई दे रहे हैं जो वाइट कलर के हैं।

औरत भी और एक आदमी ने भगवे कलर की टी शर्ट पेहनी हुई है।

और गले में नेक पे रखा है जो रेड कलर का है।

और कुछ पीछे भी आदमी बैठे हुए हैं और एक आदमी बाइक के पास खड़ा हुआ है जिसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई है और पैंट पहनी हुई है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें कुछ आदमी और कुछ औरत खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं।

और एक सामने की ओर दीवार पे प्लस का निशान भी लगा हुआ है और--

और सामने की ओर जो आदमी है उसने व्हाइट कलर के ड्रेस पहनी हुई है।

यह एक चित्र है जिससे हमें बहुत सारे गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इसका कलर दोनों का कलर ब्लैक है और एक गेट खुला हुआ भी है और सामने की ओर हमें तीन तीन से चार बस भी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें सामने की ओर कुछ डिब्बे और अलमारी दिखाई दे रही है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें बहुत सारे फूल रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यह व्हाइट कलर रेड कलर के है नीचे कारपेट भी है रेड कलर का।

जिसमें से कुछ डिब्बे सामने क्यों रखे हुए हैं।

यह एक चित्र है जिसमें से हमे सामने की ओर एक कांच का डोर भी दिखाई दे रहा है और एक स्टील की रेलिंग भी दिखाई दे रही है दो।

जिसमें से छत पर बहोत सारी लाइट लगी हुई है।

यह एक चित्र है जिसमें हमें सामने की ओर कुछ पर्दे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जो ब्लैक कलर के हैं।

जिसमें सामने की ओर शास्त्री स्वीट लिखा हुआ है रेड कलर में।

और सब बहुत सारे यहां पे पेड़ पौधे भी हैं।

यह एक चित्र है जिसमें हमें बहोत सारे आदमी और औरत बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जो लाइट शीशे की बड़ी अलमारी में रखे हुए हैं जिसमें लाइट भी जल रही है।

और तीन पंखे भी लगाए रहे हैं।